और उस चट्टान से लोग गुजर रहे है।

ऊपर चढ़े हुए हैं और कुछ नीचे खड़े हैं।

और यहां पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं।

लोग बैठे हैं और रास्ते में कुछ गाड़ियां भी हैं।

यहां पर कुछ सजावट की गई है और कुछ लोग भी यहां पर--

यहां पर कुछ सजावट की गई है और छ--

और आसपास कुछ पेड़ लगे हुए हैं।